यहां पे झालर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाहर एक बाउंड्री नजर आ रही है जो कि रेड और येलो कलर की है।

इस दृश्य में बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।

सामने एक पूल नजर आ रहा है जहां पर की आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा रूम का चित्र नजर आ रहा है जहां पर की ढेर सारे आदमी बैठे हुए हैं।

के आगे एक सीट लगा हुआ लोहे का।

यहां पर दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

सारे व्यक्ति खड़े हैं और साइड में एक स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है यहां पर कि एक पौधा लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा रास्ता नज़र आ रहा है जिसपर की टाइलसे लगी हुई है।

एक घर दिखाई दे रहा है जोकी येलो रंग का है और बहुत ही बड़ा घर है।

उसके अंदर ढेर सारे बोटल रखी हुई है।

हिरनों के अगल बगल ढेर सारी टोकरिया भी नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जहां पर की तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।